यहाँ एक बोहोत अच्छा घर है उसके अंदर एक गेट लगा है।

अ ई घर में खाड़ी बहुत ही अच्छा है।

यहाँ पे जाम लगने कि बहुत --

यह एक पेट्रोल पंप है। यह का है। यहाँ पे --

क्या न तो क्या है लगता है दारू-वूरु पी रहा है।